यहाँ पर पहाड़ है पहाड़ मे अ पेड़-पौधे है जिसमे बीच-बीच मे पानी भी है।

एक अ झुनजुना बजा रहा है। एक गिटार बजा रहा है। एक दफली बजा रहा है। ऊपर की तरफ दो फ फिश हैं जो लकड़ी की बनी हुई है।

और कुछ प्रोडक्टस पड़े हुए हैं अंदर रैक में अलग-अलग टाइप के किराने की दुकान लग रही है।

एक संदुल टेबल जैसा है पुरानी एक अलमारी रखी हुई है और कुछ टाइल्स नजर आ रही है खाली है पूरा।

शेड लगा हुआ है। मल्टीयाँ लगी हुई हैं और आसमान नजर आ रहा है और पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।